दिख रहे हैं कि वो भी बहुत सुंदर लग रहा है की यहाँ पे पानी भी भरा हुआ हैयहॉं पे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं यहाँ पे पहाड़ भी दिख रहा है बादल हरा और नीला और पिंक कलर का--

बादल भी दिख रहा है यहाँ पे की बादल दिख रहा है वो भी वाइट कलर में और--

तालाबी दिख रहा है की ये बी कुछ पिले कलर में पुते हुआ है यहाँ पे पेड़ भी दिख रहे है यहाँ पे इ ये पत्थर भी --

यहाँ पे यहाँ पे ये बहुत से पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे मैदान भी डाला हुआ है और रोड भी डला हुआ है यहाँ पे--

की सतरंगी ये भी दिख रही है यहाँ पर रंग-बेरंगी कपड़े दिख रहे है की यहाँ पे पेड़-पौधे भी दिख रहा है बादल भी दिख रहे कुछ परोस भी दिख रहे वो भी यह पे मेटी भी बिछी हुई --